साफ सुथरा एरिया बिल्कुल खंबा दिखाई दे रहा है पक्की सड़क है।

और ये गाय भैंस की फोटो खींच र के लगा रखी है ये हस्पताल सा लागा है।

और नीला सा जंगला दिखाई दे रहा है। साइड में नीला गेट दिखाई दे रहा है। जिसपे ऐ_सी वन सिक्स वन नाइन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

टैटू टु टु शॉप है पता नहीं किस चीज की है।

लड़ी सी दिखाई दे रही है और जिसमें--

मुड्डे भी रखे दिखाई दे रहे हैं पीप्पि रखी दिखाई दे रही है गेट दिखाई दे रहा है।

इसमें फूलों के अलग अलग वैरायटी हैं बहुत ही कलरफुल फ्लॉवर्स हैं येलो बहुत से कलर हैं और--

और जैकेट दिखाई दे रही है और ये किसी हैंगर पर टंगी हुई दिखाई दे रही है और टेबल पर भी रखी दिखाई दे रही है और सी दिखाई दे रही है।

इस फोटो में आप देख सकती हो ये एक आंगनबाड़ी किसी फोटो लग रही है।

और काफी डिजाइन के शीशे दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में आप देख सकते हो। सफेद पर्स दिखाई दे रहा और साइड में कूलर रखा दिखाई दे रहा है।

मणिपुरम गोल्ड लोन का भी लिखा हुआ है और कई सारी बाइक खड़ी है बाहर।

इसमें आप देख सकते हैं कि अह बोरी दिखाई दे रही है पीपी रखी दिखाई दे रही है और एक पशु का मेडिकल स्टोर सा दिखाई दे रहा है।